व्हाई सिलाब के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सिलाब पैकेज की कुछ क्षमताओं तथा सिलाब में शिफ्ट करने के लाभों के बारे में जानेंगें
सिलाब मुफ्त एवं ओपन सोर्स उपयोगकर्ता अनुकूल न्यूमेरिकल एवं कम्प्यूटेशनल पैकेज है
इंजीनियरिंग एवं विज्ञान की विभिन्न स्ट्रीम में प्रयोग किया जाता है
यह विंडोज लिनक्स तथा मैक osएक्स नामक विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए उपलब्ध है सिलाब को साइंटिफिक के सीआई तथा लैबोरेटरी के लैब को जोड़कर उच्चारित किया जाता है क्योंकि सिलाब एक मुफ्त एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है अतः यूजर सोर्स कोड को देख एवं संशोधित कर सकते हैं
सोर्स कोड का पुनर्वितरण एवं सुधार कर सकते हैं
किसी भी उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं
यह निजी उद्योगों उद्यमियों रक्षा संगठनों अनुसंधान संगठनों शैक्षिक संस्थानों एवं व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए यह स्पष्ट रूप से लाभप्रद है
एक संस्थान के रूप में फॉस टूल्स को अपनाने के द्वारा कॉमर्शियल पैकेजों की चोरी को पूर्णतया रोका जाता है
सिलाब के प्रयोग करके अकादमिक स्तर पर सीखी गई स्किल्स बाद में उद्योग में उपयोगी होती हैं क्योंकि उपयोग निशुल्क है
विभिन्न टूलबॉक्सेस जो मुफ्त भी हैं के साथ साथ सिलाब निम्नलिखित आपरेशंस संपादित कर सकता है जैसे मेट्रिक्स ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम इमेज एवं वीडियो प्रोसेसिंग सीरियल टूलबॉक्स का प्रयोग करके हार्डवेयर का वास्तविक समय नियंत्रण हार्ट टूलबॉक्स का प्रयोग करके दाता एक्विजिशन systemsकार्ड्स की इंटरफेसिंग की सहायता से सिम्यूलेशन प्लॉटिंग हार्डवेयर इन लूप यानी एचआईएल सिम्यूलेशन हार्डवेयर इन लूप लूप में वास्तविक अवयव जोड़ने के द्वारा शुद्ध वास्तविक समय अनुकरण से भिन्न होता है
सिंगल बोर्ड हीटर सिस्टम डिवाइस के साथ संयोजन में सिलाब को कंट्रोल सिस्टम से संबंधित प्रयोग करने के लिए हिल सेटअप के रूप में प्रयोग किया गया है
सिलाब के लिए रचनाक्रम बहुत आसान है
बहुत सी आंकिक समस्याओं को पारंपरिक भाषाओं जैसे फोर्ट्रान सी या C का प्रयोग करके प्राप्त किये गए समान समाधानों की तुलना में कम कोड लाइनों में व्यक्त किया जा सकता है
कई प्रसिद्ध प्रोप्राइटरी पैकेजों की तरह सिलाब में अंकीय गणनाओं के लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी जैसे लैपैक का प्रयोग किया जाता है
यहाँ एक बहुत बड़ा यूजर समुदाय है जो निम्नलिखित रूपों में काफी योगदान करने के द्वारा सिलाब का प्रयोग एवं समर्थन करता है मेलिंग सूचियाँ यूजनेट ग्रुप जैसे इंटरनेट डिस्कशन फोरम एवं वेबसाइटें
सिलाब इसके टूलबॉक्सेज तथा मेलिंग लिस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए scilabओआरजी या scilabइन वेबसाईट पर जाएँ कुछ संगठन जो सिलाब का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं निम्नलिखित हैं सीएनईएस जो फ्रेंच स्पेस सैटेलाईट एजेन्सी है इक्वालिस इक्वॉलिस टेकपैशनटेक एवं अनुसंधान एवं शिक्षण उद्देश्यों के लिए आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में एनएमईआईसीटी परियोजनाओं द्वारा सिलाब के प्रचार प्रसार के लिए की गई कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं लैब माइग्रेशन यानी सिलाब की सभी कम्प्यूटेशनल लेबोरेटरीज को स्थानान्तरित करना वर्चुअल लैब्स यानी सिंगल बोर्ड हीटर सिस्टम के लिए दूरस्थ अभिगम इसके अतिरिक्त भारत सरकार के एमएचआरडी आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा वित्तपोषित फॉसी प्रोजेक्ट वर्तमान में पाइथॉन एवं सिलाब पर ध्यान दे रहा है
इस समय हमारे पास सिलाब के कई स्पोकन ट्यूटोरियल हैं
भारत में सिलाब प्रयास scilabइन वेबसाइट द्वारा समन्वित हैं
यहाँ कुछ आकर्षक प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिनमें से एक टेक्स्टबुक कंपेनियन प्रोजेक्ट है जो सिलाब को प्रयोग करके स्टैण्डर्ड टेक्सटबुक्स के हल किये हुए उदाहरणों की कोडिंग करता है
यह लिंक प्रोजेक्ट उपयोगकर्ताओं को ज्ञात सिलाब दस्तावेजों को जोड़ने तथा उन्हें रैंक देने की अनुमति प्रदान करता है
हम सिलाब वर्कशॉप को व्यवस्थित करने में भी मदद करते हैं
हमारे पास दो मेलिंग सूचियाँ हैं जिनमें से एक घोषणा करने के लिए तथा दूसरी विचार विमर्श करने के लिए है
हम अपनी सभी गतिविधियों में आपकी भागीदारी आमंत्रित करते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल पर वापस चलते हैं स्पोकन पार्ट विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगें
ये spoken tutorialओआरजी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं
इन ट्यूटोरियल्स ने सिलाब में लेवेल 0 प्रशिक्षण के एक भाग का निर्माण किया है
ये ट्यूटोरियल्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं
हम इस तरीके से अनेक फॉस सिस्टम्स को कवर करना चाहते हैं
हम इन पर आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं
हम आपकी सहभागिता का भी स्वागत करते हैं
इस सॉफ्टवेयर के लिए रूपरेखा लिखने पर
मूल स्क्रिप्ट्स को लिखना स्पोकन ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करना
स्क्रिप्ट का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना
स्क्रिप्ट में प्रयुक्त ऑडियो को भारतीय भाषाओं में डब करना
समीक्षा करना तथा उपरोक्त सभी पर अपना फीडबैक देना
हम इन स्पोकन ट्यूटोरियल्स का प्रयोग करके वर्कशॉप का आयोजन करने के लिए आपका स्वागत करते हैं
हम स्पोकन ट्यूटोरियल पर प्रभावी अध्ययनों का आयोजन करने के लिए भी आपको आमंत्रित करते हैं
हम ऐसे विशेषज्ञों की तलाश भी कर रहे हैं जो ऑडियो वीडियो ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन आदि में तकनीकी सहायता प्रदान कर सकें
हमारे पास इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी उपलब्ध है यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन द्वारा बनाया गया है
फॉसी प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी fosseeइन या scilabइन वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिये धन्यवाद अलविदा